किनारे पर दीवाल दिख रही हैं जो हरे रंग की है और एक जाली वाला दरवाजा भी दिख रहा है जिसका रंग काला है।

यहाँ एक जगह का चित्र जहाँं पर काफी सारे लोग मूर्ति उठा रहे है जहाँं पे काफी सारे फूल है और माला है।

यह एक जगह का चित्र है जहाँ काफी बड़ा तालाब है तालाब के बीच में बड़े-बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं झरना बह रहा है।

यह एक जगह का चित्र है यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए है दो लड़किया पानी के अंदर है।